और जैसे की आप देख सकते है आस पास में कई पेड़ भी नज़र आ रहे है बहोत शांता जैसे की थोड़ा बहोत लग रहा शानदार बना हुआ है।

आप सामने दो शॉपे दिखाई दे रही है जैसे कि एक है खिलौनों की दुकान एक है रेडीमेड कपड़ों की दुकान दिखाई दे रहे हैं।

और साथ में कुर्सी एक कुर्सी पड़ी हुई है एक साइड में देखा जा सा तो गमला भी रेडी गमला पड़ा हुआ है। सामने लाइटें नज़र आ री हैं।

जैसा कि आप सामने देख रहे हो सामने आ रा हैं।

लास्ट लाइटिंग बहुत जादा काफी अच्छी डेकोरेट किया गया है और सामने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

और देख सकते हैं बेंच के साथ में ही चेयर्स वगैरा लगाई गई हैं।

जैसेकी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है यहां पर कैमरे लेकर।

चार मंजिल घर बनाया गया है जिसको लाइटिंग साथ कवर किया गया है।

जैसे कि दिखाया जा रहा है वाइट कलर का--

और साथ में सड़क नजर आ रही है और आसपास ट्रक नजर आ रही है।

जैसा कि ये सामने देख रहे झूले बच्चों के लिए दिखाए जा रहे है।

और लैट्रिन दिखाई दे रहे हैं और दरवाजा दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

खम्भा दिखाई दे रहा है और आगे बहोत सारी गाड़ीयां जाते हुई दिखाई दे रही है और यहां पे सड़क के एक साइड बहोत सारा घर बनते हुए दिखाई दे रहे--